और एक लोहे की रेलिंग भी दिखाई दे रही है।

और मेज भी रखी हुई है।

यह एक दुकान है जिसमें बहोत सारे सामान रखा हुआ है।

यह एक मंदिर है जहां पर बहोत लोगों की भीड़ लगी हुई है।

और यहां पर बोर्ड भी लगे हुए हैं।

और यहां पर बहोत सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ा मैदान है।

बाइक्स भी खड़ी हुई है और एक कार भी नजर आ रही है।

और वाश बेसिन भी दिखाई दे रही है और एक काउंटर भी रखा हुआ है।

और एक नीले कलर का बोर्ड भी नजर आ रहा है।

यह एक कार एजेंसी है जिसमें बहुत सारी कार नजर आ रही है।

और बहुत सारे बर्तन भी दिखाई दे रहे है।